एक गधा खड़ा हुआ है जो ऑरेंज का कलर है जमीन पर छोटे छोटे पत्थर डले हुए है और कुछ बाल्टिया भी डली है बाल्टिया मे पन्नी लगी हुई है।

एक ने नीला एक ने गुलाबी और कुछ फुकाने लगे हुवे है स्टेज के पिछे का रंग सफेद है फर्श का रंग आसामी कलर जैसा है।

लगा हुआ है जो नीला है एक सकूटी वाले का पीछे का हिस्सा दिखाई रहा है दो बाईक पार्किंग में भी लगी हुई है।